मुझे यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर लाइटिंग भी दिखाई दे रही हैं।

पंखे दिखाई दे रहै है और एक व्य --

मुझे यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है।